मुझे व्हाइट कलर के बरंदा भी दिखाई दे रही है।

मुझे बहोत सारा घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे पत्थर भी दिखाई दे रहीं है।

मुझे यहां केशर मशीन दिखाई दे रही है।

मुझे दीवार का पंखा भी दिखाई दे रही है।

मुझे रेड कलर का फूल भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक कार्टन भी दिखाई दे रही है नीचे में।

मुझे वहां रस्ते में एक औरत चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पानी भी दिखाई दे रही--

मुझे यहां पे चार बाइक दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां कपड़ा सुखाने वाला दिखाई दे रही है।

मुझे राइट साइड में पानी का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

गाड़ी में नंबर नहीं लिखा वो भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बड़ा सा घर व्हाइट कलर का वो भी दिखाई दे रही है।

नीचे वाला पिलो भी दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट का है।

मुझे एक बाइक भी दिखाई दे रही है।